उसको इसलिये बंद किया गया है क्योंकि अगर वो किसी को नुकसान नाही पहुंचा सकता है और कुछ इसलिये उसको यहाँ पर बंद किया गया और जालिया भी लगी हुवी है।

पर्दे जो अपन घर में लगते है ये गेट के यहाँ विंडो के यहा --

कितने अच्छे लग रे है देखिये ये छत्रपूर का नजारा है जो आपको देखणे को मिल रहा हैऔर ये पडदे वही छत्रपूर के है कितने अच्छे लग रहे है ये पडदे.

इनका जरुरी काम भी हो जो भी ऑफिस का वो हायस्कूल का जो भी काम हो वो कर रहे है --

चंद्रमा और बोहोत सारे पेडे और पहाड भी है और याह कुछ नाव में बैठे हुवे जो लोग जो देख घूम रहे हैं। इस पानी में और ये --

और इस मे चम्मच भी है और यहाँ कागज भी डला हुआ है बटकी बिटकी बटकी भी रखी हुई है बॉटल भी चेयर के उपर रखा हुआ है ये चतरपुर का है।